तथा एक बुढ़िया भी झुकी हुई है पीछे एक नाव दिखाई दे रहा है जिसपे अ लाल रंग का अ झंडा लगा हुआ है झंडे की मात्रा दो है पीछे एक बहुत अ बड़ी बोट दिखाई दे रही है जिसपर भी बहुत से वयक्ति सवार हुए है।

यहाँ पर बहोत से वयक्ति दिखाई दे रहे है बहुत से बलब भी लगे हुए है तथा दू लड़कियाँ दिखाई दे रही है जिसके हाथ में जिसके हाथ में लैंप हूँ है।

यहाँ पर एक रात का दृश्य लग रहा है जहाँ पर दो तीन आ दिए रखे हुए है यहाँ जो साफ़ दिखाई दे रहे है तथा बाद में बौ पीछे बहुत से दिए रखे हुए है जो जल रहे है और

येह एक हेयर सलून का द्रिश्य लगता है एक बालक आगे है जो पोज़ दे रहा है उसके पीछे एक व्येक्ति है जो टी_भी देख रहा है।